और एक ग्लास भी रखा हुआ नज़र आ रहा है और एक बिजली का बोर्ड भी नज़र आ रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक दुकान नजर आ रही है और उसके ऊपर लगा हुआ बोर्ड भी नजर आ रहा है जिस पे कटिंग सेंटर सैलून लिखा हुआ नजर आ रहा है --

पीछे सफेद कलर की दीवार भी नजर आ रही है गाड़ी का बोनट भी नजर आ रहा है और गाड़ी की नेम प्लेट भी नजर आ रही है और गाड़ी की लाइटें भी नजर आ रही है।

और सामने ही एक शॉप और नजर आ रही है उसमें जलती हुई लाइटें और ट्यूबलाइट भी नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक सलून नजर आ रहा है सलून के अंदर एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रही है एक कुर्सी पर टावल भी डले हुए नजर आ रहे हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ एक इलेक्ट्रिशन की दुकान नजर आ रही है और उस के ऊपर लगा बड़ा सा बोर्ड भी नजर आ रहा है जिस पे --

और वॉशवेशिन में लगा हुआ पाइप भी नजर आ रहा है सामने ही एक आईना भी लगा नजर आ रहा है और --

और ऊपर जलती हुई लाइट भी नजर आ रही है और आईने के सामने बहुत सारे शैंपू भी रखें नजर आ रहे हैं और टेबल के अंदर रखी हुई टॉवले भी नजर आ रही हैं --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ एक दुकान नजर आ रही हैं दुकान के अंदर बहुत सारी अगरवत्तियाँ भी रखी हुई नजर आ रही हैं अगरबतियों पे लिखा शुगर गुलाब --

दूल्हे के सिर पे लगी हुई लाल कलर की टोपी नजर आ रही है और उसके गले में डाली हुई फूलों की --

और एक दीवार पे लगा हुआ लैंप लैंप पे नज़र आ रहा है और नीचे बहुत सारे पौधे पेड़ भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं और एक ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने शख़्स खड़ा हुआ नजर आ र --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ बहुत बड़े बड़े पिलर नजर आ रहे हैं और दो पिलरों पे बना एक पुल भी नजर आ रहा है सामने --

दो काले कलर के मुंह नजर आ रहे हैं जिसके अंदर डाल डलती है और नीचे लगा हुआ एक गेट भी नजर आ रहा है और--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है और मंदिर के अंदर एक काली सी मूर्ति रखी हुई नजर आ रही है ।

बड़ा सा दीपक भी रखा हुआ नजर आ रहा है वो दीवार पे बनी हुई तस्वीरें भी नजर आ रही हैं।

और पर एक बिजली का खंभा भी नजर आ रहा है और दिन का वक्त मालूम पड़ता है और नीचे लगे बहुत सारी घास भी नज --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा मेदान नजर आ रहा है और मेदान के अंदर बहुत सारे लोग कुछ खेलते हुए नजर आ रहे है --

और एक लाइट का पोल भी लगा हुआ नजर आ रहा है और जिनका वक्त मालूम पड़ता है और एक सफेद कलर का कुछ नजर आ रहा --